सामने एक आदमी बैठा हुआ है जिस सामने बहुत सारी मछलिया छोटी छोटी और बड़ी बड़ी मछलिया रखी हुई है एक मे बहुत सारी मछलिया भी--

साथ ही ये लड़का जूते पेहन--

नीचे एक दरी बिछी हुई है जो की नीले लाल के खन के खन बनी हुई दिखाई दे रही है सामने एक बॉडी बिल्डर का पोस्टर भी लगा हुआ है। ऊपर सफ़ेद कलर का --

आनंद उठा रहे है और ऊपर की और रंग बिरंगे झूले नज़र आ रहे है।

पास पास हरी माई चश्मे वाला लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत से लोग लाइन लगाय खड़े हुए हैं सामने एक लकड़ी का ठेला लगा हुआ है एक मोटर साईकल खडी हुई है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसपे बाल दाढ़ी लिखा हुआ है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो एक दुकान मे खड़ा है इस दुकान मे कही प्रकार के कुरकुर माजा और टोटल कोल्ड ड्रिंक्स और ब्रश--